यह एक रेस्टोरेंट की पिक्चर है जहाँ पर खाना खाने के लिए बहुत सारे--

जो कि बहुत सुंदर लग रही है रोड के साइड बहुत सारे वाहन खड़े हुए हैं और एक रेड़ी वाला भी खड़ा है जो कि खाने-पीने की चीज--

ये एक रोड साइड घर की पिक्चर है घर की दीवारों का कलर सफेद है।

यह दृश्य एक हॉल का है इस हॉल में एल_सी_सी कंपनी की मीटिंग हो रही है जिसके लिए बहोत व्यक्ति आए हुए हैं।

बाहर बहोत ही सुंदर डेकोरेशन है और कुछ कुर्सियां पड़ी हुई है।

सामने दो सड़क जा रही हैं एक व्यक्ति भी वहां से जा रहा है।

एक व्यक्ति बाइक पर बैठा हुआ है और एक लड़का भी खड़ा हुआ--

यह दृश्य हरिनगर रेलवे स्टेशन का है सामने एक गलियारा है गलियारे के सामने निकास द्वार है।

बाहर एक कुर्सी रखी हुई है दुकान के सामने हरे रंग के पर्दे भी लगे हुए हैं दुकान के अंदर एक टेबल भी रखी हुई है।

रोड के आस-पास बहोत हरियाली है पेड़-पौधे हैं आस-पास कुछ बिल्डिंग्स भी बनी हुई हैं बोट का रंग पीला है।

यह एक दुर्गा माता का पंडाल है जिसमें बहुत ही सुंदर दुर्गा माता की एक मूर्ति रखी हुई है।

और यहां पर बहोत सारे व्यक्ति भी खड़े हैं जो यहां पूजा करने आए हैं।

और सामने एक तराजू है जहां पर लकड़ियों का वजन करके ट्रक पर चढ़ाया जा रहा है।

फैक्ट्री के सामने एक बहोत ही चौड़ी रोड है यहाँ पर पेड़-पौधे भी है एक बिजली का ट्रांसफार्मर भी है यहाँ पर।

रथ यात्रा की सजावट बहुत ही सुंदर तरीके से की गई है।